यह हमारे एरिया का ऑफिस है इस ऑफिस का मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ है उससे मिलने बहोत से लोग आये हुए है।

हमारे एरिया का एक सैलून है इस सैलून में लोग बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के लिए आते है।

यहाँ एक बहुत बडी जलाशाया है यहाँ पर पानी जमा किया जाता है।

यह एक बहुत ही प्रसिद्ध किले का स्तंभ है ये स्तंभ बहुत ही भव्य है और अनोखा भी है।